उसके बाहर बहुत सारे लोग बैग टांगे खड़े है अपने बस में चढ़ने के लिए कोई लोग टिकट खरीद रहे इधर से उधर।

यहाँ पर एक ग्राउंड में प्रैक्टिस चल रही है मिलिट्री वाले लड़को की जिसकी बाल ऐसे छोटे-छोटे होते है।

उन की प्रैक्टिस बीच में है उसको जाना है।

ये एक पुराना शखा है जिसके बाहर बहुत सारे आदमी खड़े हुए है ऑटो के बाहर बहुत सारे लोग है जो उनके ड्राइवर है।

यहाँ एक ग्राउंड में बहुत सारे क्रिकेटर है जो व्हाइट कलर के यूनीफार्म पहने है कुछ ब्लैक कलर का कैप लगाए कोई ब्लू कलर का कोई व्हाइट कलर

यहा पर इस फोटो में बहुत से छोटा सा हर्ट है जिसके ऊपर शेप डला हुआ है उसके नीचे क्राउन बना हुआ है क्रॉस बना हुआ है।